अपना कैमरा लेकर उनकी फोटो खींच रहा है।

टी -श टी-शर्ट पहने हुए आदमी दुकानदार से बात कर रहा है।